कुछ लंबे हैं। यहां पे गोलाकार है।

एक बेसिंग है एक टॉवल है साफ करने के लिए छोटा हाइपर रखा गया है।

कॉलेज के आगे में बड़ा सा मैदान--

झंडा फहराने के लिए चबूतरा बनाई गई है जो तीन कलर से रंगा गया है।

यह एक घर की छत की ढलाई की जा रही है उसका दृश्य--

बगल में एक आसकुटि लगी है।

एक आदमी है जो एयरफोन लगाया हुआ है ब्लैक कलर के शर्ट पहना हुआ है।

धागे मे एक ढेर सारे गेंदे के फूल लटकाए हुए--

तीनों बच्चे जूते पहने है।

ये एक विद्यालय है इसका नाम सुखदेव मुखलाल इंटरमीडिएट विद्यालय है।

एक दरवा यहां पे कांच लगाई गई है एक बैनर है जिस पे तरह तरह के सामानों का फिगर बनाया गया है।

एक आदमी गेरूआ कलर के कपडा पहना हुआ है।

हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

यहां पे बहुत अच्छी सी मंडप सजाई गई है।

कुछ गद्दे बिछाए हुए हैं।

कुछ कुर्सी रखे हुए है ढेर सारे।

एक लाल पट्टी लगाई हुई है उसमे भी पौधे लगाए हुए हैं।

यह एक पार्क है इस पार्क में लोग व्यायाम करने आते है अपने स्वास्थ्य के लिए।

इसका नाम डाल्टेनगंज है।

यहां पे रेल चलने की तीन पटरियां हैं।

आ पे यात्रीगण के बैठने की सीट बनाई गई है।

आदमी सामने में बैठा हुआ है ढेर सारे आदमी बुली बुली कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

यह एक बैंक है इसपे बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है उसपे एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

एक दरवाजा है जिसमें ग्रील लगा हुआ है।

और उनके आगे एक पंडाल लगाया गया है रेड कपड़े से।

तीनों एक ही कलर के हैं।

एक रिक्शा और है जिसका सिर्फ अगला चक्का और हैंडल दिखाई दे रहा है।

वे एक पिंक कलर का पर्दा है।

बहुत सारी लाइट लगाई गई है नीचे कारपेट बिछाई गई है।

यहां यात्रीगण के बैठने के लिए सीट है इस असटेशन का नाम तोरी है ऊपर बादल है।